हम यहाँ पर देख रहे हैं और हमे यहाँ देखते हैं जो बहोत सुन्दर-सुन्दर लोग हैं जो हमें यहाँ पर बहोत सुन्दर हमें लगता है।

पर कितना अच्छा फंक्शन हो रहा है जो कितने सारे लोग खाना खा रहे है।